झुकी है एक के ऊपर एक रखे हुए हैं और ये टेबल के ऊपर रखा हुआ है।

चेयर है और जिम मशीन है लाइट्स है।

पे बहोत सारे लोग मंदिर में दर्शन के लिए आए हुए हैं।

बोहोत सारा पानी है पत्थर है ये एक झरने की तस्वीर है जहां से पा--

जैसे की फोटो में देखाया गया है ये एक--

यहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है।

बोहोत सुंदर घर है बोहोत सुंदर डेकोरेशन किया गया है और बोहोत सारा पेड़ हैं।

फोटो में दिखाया गया है बहोत सारी औरतें--

जैसे की फोटो में दिखाया गया है ये एक--

ये एक झरने की तस्वीर है जहां से बहोत सारा पानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है।

और दो टेबल चेयर रखे हुए हैं और एक घड़ी है।

लाइट्स हैं बहुत सारा फोटो फ्रेम हैं।

और यहां बहोत सारा लाइट्स है बहोत सारा फैन है और स्विच बोर्ड है।

बहोत सारा गाड़ी पार्क किया गया है बहोत सारा स्कूटी है बहोत सारा बाइक है और दो आदमी जो है वो बात कर रहे हैं।

बहोत सारे पत्थर है बहोत सारा पेड़ है और ये एक खाली जगह है।

जैसे की फोटो में दिखाया गया है यह एक--

बहोत सारे स्टूडेंट खड़े हुए हैं।

यह एक स्कोलार्स इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं और यहाँ पे--

जहाँ पे बोहोत सारे पेड़ है।

और पत्थर हैं बैठे के लिए--

और यहां पे बहोत सारे पेड़ हैं और गेट बंद है और दो बाइक खड़े हुए हैं।

और बहोत सारे लोग जो खड़े हुए हैं--

यह एक खाली जगह है जहाँ पे पानी भरा हुआ है और बोहोत सारे पत्थर है बोहोत सारे पेड़ हैं।